और दो लोग है जो बैठे हुए है।

उसके बाहर ही एक बाल्टी रखी हुई है और एक डस्टबिन रखा है।

इस तस्वीर में पानी के अंदर--

जिसमें कई सारी जैकेट लटकी हुई हैं।

इस तस्वीर में काफी सारे लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

कुछ दुकानें है एक कपड़ों की दुकान है जिसपे लिखा है स्मार्ट हब --

और एक दुकान पर जो है वो लिखा हुआ है हिमाचल जूस कॉर्नर --

ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है बादल दिखाई दे रहे हैं।

थोड़ी थोड़ी जगह जगह मछलियां रखी हुई हैं।

हॉर्लिक्स तेल साबुन जॅम्स फेवीक्विक कोलगेट --

खड्डा खोदा गया है जिसमें ईंटें लगाई हुई है उसके अंदर से ऊपर की ओर--

इस तस्वीर में एक सड़क दिखाई दे रही है।